बैग टंगा हुआ है हाथ में झो बोरा भी लिया है बहुत अच्छे लग रहे है देखने में यहां पे शटर गिराया चाय का दुकान खोला हुआ है मकान भी ढेर सारे बनाया बहुत अच्छा लग रहा है देखने में।

बलब भी लगाया हुआ है। एल.ई.डी. बल्ब है अच्छा लग रहा है ये देखने में घर भी बहुत अच्छे से बनाया है।